यहाँ संत लोग है जो योगा कर रहे है। खंबे गड़े हैं। पाइप पे पेड़ है । मन्दिर है। सीढ़ियाँ है। आदमी हैं कुछ --

दो बाइक हैं और घर में अंदर तुलसी के पेड़ है। पेड़ पौधे हैं। लाइट लगी हैं खंबे हैं।

हरी मिर्च है लाल मिर्च है फूलगोभी है आलू है साग है मटर है आदमी है औरत है और बोरी है।